वो एक मशीन पर--

ये एक पेट्रोल पंप की चित्र है।

और काफी सारी लाइटें लगी हुई हैं।

वहाँ पर सफेद रंग की एक गाड़ी खड़ी है।

ये तस्वीर में दो बहुत बड़ी बड़ी सी इमारतें हैं।

पास में एक बड़ा सारा पेड़ भी लगा है।

इस्टेज पर जाने के लिए सीढ़ियाँ लगाई हुई हैं।

एक तस्वीर भी लगी हुई हैं।

लड़के एक टेबल पर खेल रऐ हैं।

अंदर छोटी छोटी सी झोपड़ियाँ हैं।

यह तस्वीर में एक बड़ी सारी सफेद रंग की गाड़ी है।

जहाँ पर काफी सारे कपड़े रखे हुए हैं।

ऊपर एक बोर्ड लगा है जिस पर एक्सीडेंट इमरजेंसी लिखा हुआ है।

इस क्षेत्र में एक मिट्टी की सड़क दिखाई दे रही है।

पेड़ों पर सफेद और लाल रंग की पट्टी बनी हुई है।

काले रंग का बड़ा सारा जाली का दरवाजा हे।

इस क्षेत्र में एक बहोोोत बड़ा सा --

और पानी की कुछ बोटलें रखी हैं।

ये तस्वीर एक स्टेज की है।

जिसके बाहर कुर्सी पर एक चौकीदार बैठा हुआ है।

यहाँ पर कुछ चट्टानें दिख रही हैं।

कमरे में काफी अच्छी लाइटें लगी हुई हैं।

जहाँ पर एक बस खड़ी है।

इस क्षेत्र में हरे रंग का एक ऑटो --

जमीन पर हरे रंग का कालीन बिछा है।

ये चित्र एक खेत का है।